जिसमें बहुत सारे जैकेट टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे जींस दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे कपड़ा दिखाई दे रहा है।

सामने एक सफ़ेद कलर का खम्बा जैसा दिखाई दे रहा है।

पलंग दिखाई दे रहा है अंदर बहुत सारे लकड़ी दिखाई दे रहे हैं।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

सामने एक दुकान दिखाई दे रहा है। जिसके सामने टेबल पर तीन प्लास्टिक में सामान रखे हुए दिखाई दे रहे है।

अंदर बहुत सारे शीशे लगाए गए हैं उसके सामने बहुत सारे बाइक खड़े दिखाई दे रहे हैं।

जो आगे से टूटा हुआ दिखाई दे रहा है शीशा हल्का फूटा दिखाई दे रहा है।

पीछे और बहुत सारे गाड़ी दिखाई दे रहे हैं एक स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा जो--

इसमें लाल गेट लगा हुआ है अंदर एक व्यक्ति दिखाई दे रहे है।

एक फोटो दिखाई दे रहा है।

एक पेड़ दिखाई दे रहा है बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं।

सात बोरा लहसुन दिखाई दे रहा हैं उसके पीछे और लहसुन दिखाई दे रहे हैं।

पल में एक दरवाजा लगा हुआ है जिसमें एक गेट लगा हुआ है।

उसके ऊपर गमले में फूल लगाए गए हैं।

मैट बिछाया गया कुछ मैट नीले कलर के कुछ लाल कलर के--

बहुत लेडिस डांस करते हुए दिखाई दे रही है।

खूब सारे बैलून टंगाए गए टंगे गए है।

जो पीले साड़ी पहनी हुई है सामने तीन चार पिलर दिखाई दे रहे हैं।

दो व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे हैं नीचे पार्किंग का एरिया दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहे हैं दोनों हेलमेट लगाए हुए हैं जूता पहने हुए हैं।

कुछ बैलून सफेद कलर के हैं कुछ बैलून काला कलर के हैं।

उसके नीचे एक फोटो लगी हुई है जिसमे जींस और शर्ट पहनाया गया है।

दिखाई दे रहा है जिसमें बंद लगा हुआ शीशा दिखाई दे रहा है।

जो ब्लू कलर का है जिसमें खिड़कियां दिखाई दे रही--

इसमें बहुत लाइटें लगी हुई है सामने एक बहुत बड़ा लाइट लगा हुआ --

मंदिर में एक आदमी दिखाई दे रहा।

एक सफेद कलर का घर दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत लाइटें लगाई गई है।

अ जिसमें वंशिका पैलेस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

उसके नीचे और बहुत सारे लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

हमें एक छत दिखाई दे रहा है जिसमें दो रूम बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसके ऊपर ड्रेस पहनाए गए हैं। एक ले जेंट्स ऊपर से देख रहे--

सामने एक टेबल लगाया गया है।